येलो है उनमें भी हमे श्याम अं कलर के पेड़ लगे हुए दि--

और सफेद कलर के फूलों से सजाया गया है यहां पे एक--

एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जो कि वाइट कलर के पेंट और शर्ट --

रहें हैं बहोत सारे हमें सामने पेड़े भी लगे हुए दिख रहें हैं कुछ पर्वत शा भीं दिखाई दे रहा हैं ऊ--

दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ दिख रहा--

ये हमें दुकान दिख रही है जो कि कपड़ों की है यहां पर हमें कई प्रकार की बहुत सारी स्वेटर --

रहा है यहां पर हमें दो तेल के--

एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है जिसमें ग्रीन कलर का फूल लगा हुआ है।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

दे रहा है ये कोई डी_जे बक्से की फोटो है और--

कुछ येलो कुछ शू पे कुछ डेकोरे दिख रही है कुछ पत्तियाँ दिखाई दे रही है।

उसमें यहां पर एक टेम्पो खड़ा हुआ दिख रहा है। एक लेडी दिख रही जो रेड कलर की साड़ी--

हमें सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक्स-रे हाउस एंड इमेजिंग सेंटर ये एक्स-रे का हाउस है।